यह तस्वीर एक खाली जगह का है जहां पे एक जिराफ का स्टेचू बना हुआ है।

यह तस्वीर एक दुकान का है जहां पे काउंटर बना हुआ है।

यह तस्वीर मे एक आदमी है जो कि रेड शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ है।

एक आदमी येलो कलर का शर्ट पहना हुआ है।

यह तस्वीर एक टाटा नेक्सॉन शोरूम की है यहां पर तीन चार गाड़ी लगे हुए है।

टेबल भी रखा हुआ है और उसके साथ चार्जर भी रखे हुए हैं जिसका कलर व्हाइट है।

एक दो बच्चा है जिसमें एक लड़का है जो कि छोटे बच्चों को गोदी में लिया हुआ।

और नीचे टेबल पे एक पिज्जा का डिब्बा रखा हुआ है।

दो माउंटेन ड्यू का डब्बा रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है लाइफ इस ऑल अबाउट बैलेंस ।

पीछे ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में आदमी है।

यह तस्वीर में बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं जिसके सर पे वाइट टोपी है।

जिला रांची झारखंड और उसका कलर में रेड और ब्लू है और नीचे एक लेडिस जा रही है।

यह तस्वीर में एक रूम है जो--

यह तस्वीर एक ट्यूशन इंस्टिट्यूट का है।

उनके पीछे पानी का जार रखा हुआ है।

मोटे आदमी के पीछे एक स्कूटी लगी हुई है।

एक आदमी ब्लैक कलर का टी शर्ट पहने मिरर के सामने खड़ा हुआ है और एक आदमी फोन पे बात कर रहे हैं जो कि मिरर में --

यह तस्वीर एक वॉटरफॉल का है जहां पे पत्थर के बीच से पानी निकल रहा है।

सारे पत्थर पे सन लाइट पड़ रहा है।

यह तस्वीर में बहुत सारे चेयर और टेबल रखे हुए हैं।

एक डेस्क पे कीबोर्ड रखा हुआ है उसके राइट साइड एक लड़की बैठी हुई है और उसके सामने एक आदमी बैठा है जो की--

यह तस्वीर एक फूल दुकान का है जहां पे बहोत तरह के फूल रखे हुए हैं।

मक्का फिश प्वाइंट एंड चिकन शॉप ।

यह तस्वीर एक शोरूम का है जहां पे दो तीन गाड़ी लगी हुई है।

ये भी प्लांट है जिन्हें धूप नहीं चाहिए और उनको बचाने के लिए एक हरा कलर का ऊपर से टेंट लगाया गया है।

गार्डन बना हुआ है इसमें दोनों साइड फूल लगा--